मस्जिद का गेट भी दिख रहा है।

यहाँ पर लेन्टर ढल रहा है एण्ड बहुत सारे जेन्ट्स भी दिख रहे हैं| एण्ड बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं यहाँ पे| आसमान भी दिख रहा है।

एक टेप भी दिख रहा है जिससे वो नाप रहे हें।

यह एक क्लिनिक है यहा पे चार डॉक्टर्स बैठे हुए है एक नर्स भी बैठी हुई है एंड केबल में सैनीटाइज़र रखा हुआ है।

पेड़ भी दिख रहा है।

चक्के भी पड़े हुए है दो जेन्स खड़े हुए है जो काम कर रहै है साइड पे कुछ ओर भी कार खड़ी हुई हैं।